यह एक पार्क का चित्र दिखाई दे रहा है।

यह एक मोल का चित्र दिखाई दे रहा है।

यह एक घर का चित्र दिखाई दे रहा है जहां काम हो रहा है।

आसपास कई और भी घर दिखाई दे रहे हैं।

उस पर एक लाल कपड़ा भी लगा हुआ है।

कुछ हिरण के पुतले भी दिखाई दे रहे हैं।

बैंक के ऊपर चार ए_सी लगी हुई है।

कुछ पाइपें भी नजर आ रही है ।

इसकी दीवारें सफेद रंग में है तथा एक काउंटर भी नजर आ रहा है।

सूरज भी नजर आ रहा है तथा आसपास बड़े-बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे है।